और फिर साइडों में मिट्टी है सामने कुछ बड़े बड़े--

एक आदमी सेंटर में खड़ा है।

और नदी के अंदर तीन बोट हैं जिनका रंग नीला हैं और--

नदी के पीछे एक बड़ा पहाड़ है।

और साइडो में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

फैन लगा हुआ है जोकि वाइट रंग का है।

जहां पर बाहर घास लगी हुई है उनके बाहर एक बड़ा सा--

बाहर दो पौधे लगे हैं जिन पर सफेद रंग के फूल लगे हुए--

दुकान के मिरर पर लिखा है कृपया जूते चप्पल बाहर निकाल कर आए।